यहाँ लोग घूमने खुमने के लिए बोहोत ही दूर-दूर से आते है|

पास बहुत सारी घर और बहुत सारी गाँव है यह घर दिखने में बड़ा और सुंदर भी है|

यह जगह दिखने में भी बहुत सुंदर है और पाहाडी क्षेत्र --

जो दिखने में बहुत सुंदर और बहुत ही बढ़िया है यह एक बोहोत ही अच्छ --